बहोत सुन्दर आकार की बनी हुई हैं और दूर बहोत सारे पेंड़ लगे हैं ।

एक लड़को के पार्लर में बहोत सारे शीशे लगे हुए हैं और कुर्सियाँ रखी हुई हैं।

और बोहोत सारी कुर्सियों पर लोग बैठे हुए हैं। वह आपस में बात कर रहे हैं।

लोग मंदिर के अन्दर पूजा करने जा रहे हैं। एक लरका दूर से देख रहा है। आसमान में बादल हो रहे हैं।

और बैंक के अंदर कुछ लोग खड़े हुएँ हैं। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। दो बुजुर्ग महिलाएं बाहर बैठीं हुईं हैं और एक बाईक खड़ी है।